यह एक चर्च है। यहाँ पर लोग मोमबत्ती जलाकर भगवान से प्रे करने आते हैं कि इन्हे इन्होंने --

यह एक मस्जिद है। यहां पे लोग अल्लाह से दुआ मांगने के लिए आते हैं। यहां पर लोग अपने ए जितने भी --

दूसरा लो दूसरा आदमी जो कि काला टी-शर्ट पहना हुआ है वो काम नहीं कर रहा है वह फोन में कुछ देख रहा है और तीसरा आदमी ऐं बि सिर्फ बैठा हुआ है।

नी एक आदमी नीचे खड़ा है जिसने नीले रंग का कपड़ा पहना है और पीठ पर एक बैग लटकाया हुआ है।

और बोहोत ही लाइटिंग की गई है यहाँ हजारों तादाद मे आदमी औरत खड़े हुए हैं वहां एक गाड़ी भी है बीच में।

पेशेंट को दे रहे हैं और उनकी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। सभी लोग इस डॉक्टर से बहुत ही खुश हैं।

बिजली आर-पार की जाती है। च तालाब के आगे एक बोहोत बड़ा वृक्ष का पेड़ है बरगद का पेड़ है और नीम का पेड़ भी है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है।

इस जगह पर बहुत ही ठंड है। यहाँ पर एक बस खड़ी है। बस का रंग सफेद है। यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं। जिन्हैं बहुत ही --

और हरे रंग की चेयर भी लगी हुई है। यह ऑडोटेरियम बहुत ही बड़ा है और बहुत ही विशाल है।

रूम में बहुत सारी बेंच है इस रूम में अब्दुल कलाम जी का फोटो भी लगा हुआ है सचिन तेंदुलकर का --

पत्थर बहोत ही छोटे-छोटे है और बड़े-बड़ी भी है ये पत्थर दिखने में बहोत ही अच्छे हैं।

इस मकान का बोर्डर संतरी रंग का है। इस मैंदान मे बोहोत बड़ा गार्डन है। इस गार्डन मे बोहोत हरियाली ही हरियाली --

इस टापू पर बोहोत ही पत्थर-पत्थर और बड़े विशाल पत्थर भी रहते है।

हरियाली की वजह से हरा-हरा दिखाई दे रहा है बल्कि पानी बोहोत ही स्वच्छ है। उसके बगल में एक मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है और उस पर एक आदमी बैठा हुआ है।

यह एक सब्जी मंडी है। यहाँ पर सभी तरह के सब्जी ओबजी मि सब्जी मिलती है टमाटर मूली आलू लहसुन प्याज पत्ता गोभी बिन्स --

यह आदमी यहाँ पर छठ पूजा मनाने के लिए आया है। यह आदमी --

उसके बगल में छठ पूज आता है। उसके वो आदमी के पीछे एक औरत भी खड़ी हुई है जो छठ पूजा के लिए आई हुई है।

यह आदमी यहां पर जिम कर रहा है। जिम करने से आपका स्वस्थय बना रहता है और आप --

दीवाल पर बोर्ड लगी हुई है और मास्टर जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं अ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ के दीवाले पीले रंग की --

यहाँ सभी पक्षियों को पकड़ कर रखा गया है। यह पक्षियां बहोत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। इन्हैं ये खाना दिया गया है दाना।

यह आदमी जिम कर रहा है। यह आदमी ई का कपड़े का रंग --